और यह इस टॉवर में बोहोत सारे सिम के नेटवर्क के लिए इसे बनाया जाता है।

और कॉफी भी पीना बहोत अच्छी बात है कॉफी पीने से दिमाग तेज होता है।

और लोग यहाँ पे आते हैं बुक्स को पढ़ने।